java java में nonstatic block nonstatic block पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
nonstatic block के बारे में
nonstatic block कब निष्पादित होता है
nonstatic block का साधारण उदाहरण
और हमें constructors क्यों चाहिए
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
कि eclipse का उपयोग करके java में constructor कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ
अब हम देखेंगे कि nonstatic block क्या है
जो भी code दो curly brackets के बीच लिखा जाता है nonstatic block होता है
हम यहाँ syntax देख सकते हैं
nonstatic block कब निष्पादित होता है
nonstatic block तैयार किए गए प्रत्येक object के लिए निष्पादित होता है
यह constructor के निष्पादन से पहले निष्पादित होता है
यह class के instance नंबर variables को इनिशिलाइज कर सकता है
कोई any निष्पादन जैसे कि गणना भी block में दिया जा सकता है
अब eclipse पर जाएँ और nonstatic block का उपयोग करने की कोशिश करें
मैंने eclipse में पहले ही nonstatictest named class खोल दिया है
मैंने पहले ही a named class बना दिया है
अब class a में मैं पहले int प्रकार का एक variable बनाऊँगा
अतः type करें int a semicolon फिर enter दबाएँ
curly brackets में type करें system dot out dot println कोष्ठक और double quotes में non static block of an instance of class a semicolon
फिर type करें system dot out dot println brackets और double quotes में the value of a is plus a semicolon
अब हम एक constructor घोषित करेंगे
अतः type करेंpublic a opening और closing brackets curly brackets खोलें enter दबाएँ
फिर type करें system dot out dot println brackets और double quotes में constructing object of type a semicolon
फिर type करेंsystem dot out dot println brackets और double quotes में the value of a is plus a semicolon
अब इस file को सेव करें
eclipse में class nonstatictest के अंदर class a का एक object बनाएँ
अतः type करें a space a1 equal to new space a opening और closing brackets semicolon
अगली line में हम class a का एक और object बनायेंगे
अतः type करें a space a2 equal to new space a opening और closing brackets semicolon
अब file को so और now करें अतः ctrl & s और ctrl & f11 कीज दबाएँ
हमें निम्न प्रकार से output प्राप्त होता हैं
हम देख सकते हैं कि जब पहला object बनता है nonstatic block निष्पादित होता है
nonstatic block of an instance of class a और instance variable a 0 से इनिशिलाइज है
केवल उसके बाद constructor निष्पादित होता है constructing object of type a
और यहाँ instance variable फिर से 0 इनिशिलाइज होता है
फिर जब दूसरा object बनता है nonstatic block निष्पादित होता है
यह प्रक्रिया पुनः होती है
हमारे पास class में विभिन्न nonstatic blocks हो सकते हैं
इस मामले में वे class में प्रदर्शित होने वाले क्रम में निष्पादित होते हैं
अब हम अभ्यास कर सकते हैं
class a में पहले के बाद एक और block शामिल करें
अतः फिर curly brackets में type करें
system dot out dot println brackets और double quotes में second non static block of an instance of class a semicolon
फिर type करें system dot out dot println brackets और double quotes में the value of a is plus a semicolon
अब file को key करें ctrl और s key को एक साथ दबाएँ फिर program को now करने के लिए ctrl और f11 दबाएँ
हमें निम्न प्रकार से output प्राप्त होता हैं
हम देखते हैं कि पहले block के निष्पादित होने के बाद दूसरा निष्पादित होता है
तभी constructor निष्पादित होता है
अब आप महसूस कर सकते हैं कि हमें constructors की आवश्यकता क्यों है
उत्तर है क्योंकि हमें default constructor की आवश्यकता नहीं है
लेकिन nonstatic block पैरामीटराइज नहीं हो सकते
आपके पास बाहर से values लेने के लिए objects नहीं है
अतः nonstatic block constructor के लिए पर्याय नहीं है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
nonstatic block के बारे में और इस block का उपयोग करने के बारे में
स्वमूल्यांकन के लिए b named एक class बनाएँ
एक nonstatic block और constructor बनाएँ जैसे tutorial में दिखाया गया है
बनाए गए class nonstatictest में class b का एक object बनाएँ
output की जाँच करें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ